यहाँ पर काफी सारे पेड नजर आ रहे है पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे है यहा कुछ छोटे पेड़ नजर आ रहे है। यहाँ काफी सफाई दिखाई दे रही है।

पार्क नजर आ रहा है वॉटर पार्क काफी बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है स्विमिंग पूल मैं काफी ज्यादा पानी दिखाई दे रहे है।

नजर आ रहा है झरने से पानी गिरता दिखाई दे रहा है पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है पानी का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहा कुछ पौधे दिखाई दे रहे है।

पार्क नजर आ रहा है बीच मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहा पर कुछ लाइट दिखाई दे रही है पार्क के अंदर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।

गमले मे कुछ पौधे नजर आ रहे है यहाँ काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी हरे भरे नजर आ रहे है पीछे कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है।

झरने का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारे पत्थर नजर आ रहे है यहाँ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

पानी साफ दिखाई दे रहा है पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है यहा पर काफी सारी चेयर दिखाई दे रही है चेयर का कलर काला नजर आ रहा है।

स्टॉप दिखाई दे रहा है यहा पर काफी सारे बस दिखाई दे रहे है सारी बस लाइन मे खड़ी हुई नजर आ रहे है।

यहा पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है पीछे कुछ खंबा नजर आ रहा है पीछे कुछ तार दिखाई दे रहे है यहा पे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है पेड़ हरे भरे नजर आ रहे है।